बहुत सारे कुर्सी है एक आदमी लाल टी शर्ट पहनकर खड़ा हुआ है हाथ में मोबाइल लिया हुआ है।

और एक बोर्ड लगा है कोको कोला का।

और ऊपर झालर मोती लगाया हुआ है जो अ पिंक येलो ग्रीन कलर के बर रहे हैं।

पीला कलर का जीम करने वाला है।

बहुत सारे बैलून है लगता है जैसे कि नया नया ओपनिंग हुआ है।

यहां पिलर है जिनमें लाल कलर से पेंट हुआ हुआ है।

बिजली का तार है।

और एक ठो साइन गड़ा है बोर्ड का।

हरा कलर का ट्रैन है। पीछे बोगी है।

एक आदमी है जो खड़ा है बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं और वो रॉड को बाध रहे हैं।

और उसके आदमी का नीचे किताब कॉपी है और हथौड़ी है।

एक आदमी कुर्सी पर बैठा है बोतल है छाता है।

घर के पीछे एकटो और घर है।

एक बल्ब है एक बोरा है।

शीशा रखने वाला बक्सा है।

जिसमें रनिंग करने वाला दो ठो है।

और उसके बगल में ऐसा लगता है कि नदी है जो बाढ़ आया है तो पानी दिख रहा है और बहुत सुंदर

लैट्रिन करने वाला एक है।

और लाइट बर रहा है।